एक साइड पे घर है जो सफ़ेद रंग की बोर्ड लगी हुई है। बहार एक गाडी खड़ा है जो काले रंग का है खुर्सी रखी गयी है टेबल रखे गए हैं ब घर भूरे रंग की खुर्सी है टिन े लगी हुई है जो नील रंग भू भूरे रंग की टिन े है।

अगल-बगल कुछ सूखे पत्ते पड़े हुए हैं जो भूरे रंग की है हरे रंग की पत्ति है।

घर बना हुआ जो पीले रंग की गेट लगाई गयी है | बगल में दिप-घर बना हुआ है जो पीले रंग की है एक बड़ा सा गेट लगा खिड़की लगी हुई ऊपर के साइड पर तार गया जो काले रंग की है।

फर्श की गयी सफ़ेद रंग के दो कांच लगे हुई जो सफ़ेद रंग की कांच लगी हुई है।

सफ़ेद रंग का दीवाल है कांच भी लगाए गए एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है एक आदमी का चित्र बना हुआ है जिसमे सिक्स पैक्स दिख रहा --

खिड़की बनी हुई है। बाहर बरामदा है जो सफ़ेद रंग की दीवाल है। ऊपर छत है जो सफ़ेद रंग की है। दीवाल में एक सफ़ेद रंग की पोस्टर लगी हुई है। टाइल्स बिछा हुआ है।

ऊपर के साइड पे परदे हैं। कुछ बोहत सारे लोग खड़े है जो कुछ लोग काम कर रहे --